और यहां एक टंकी सी भी खड़ी है।

और यहां अंधेरा सा नजर आ रहा है।

और फोन का टॉवर भी नजर--

बहुत सुंदर होटल दिखाई दे रहा है यह डीजे से रखे हैं बजाने के।

यहां बहुत सारी नाव पानी में चल रही है।

और वहां हाइलाइट भी नजर--

और सुंदर केमिस्ट्र की दुकान लग रही है।

बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है।

यहां बहुत सारे मुडे और मेज रखी हुई है।

यह बहोत बड़ा गोदाम दिखाई दे रहा है बड़े बड़े कट्टे भरे रखे हैं।

और नीले रंग के भी पीले रंग के भी।

यह बहोत सुंदर होटल दिखाई दे रहा है।

और हाईलाइट हि हाईलाइट नजर आ रहे हैं।

और नारियल के पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यह बहोत बड़ा पारक दिखाई दे रहा है।

और बड़े बड़े फ्लैट भी नजर आ रहे।

यहां बहुत सुंदर वाटिका दिखाई दे रही है।

यहां एक मुढा सा भी रखा हुआ है बहु सुं दी वाटिका--

यहां बहोत सुन्दर घर दिखाई दे रहा है।

और सूरज भी छिपा हुआ दिख रहा है।

और फोन का टावर सा भी नजर आ रहा है।

और बहुत सुंदर सुंदर गमले घास इतनी अच्छी बना रखी है।